इस तस्वीर में आप देख सकते है आपको एक बहुत ही खूबसूरत बैंड नज़र आ रहा है और उसमें कुछ लोग बैंड को बजाते हुए नज़र आ रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टेज के पास गणेश जी की ए फोटो लगी हुई है और इसमें कुछ लोग नजर आ रहे है इसमें ये बेहद खूबसूरत लग रहा है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक मंदिर की मूर्ति नजर आ रही है।

यहाँ पर एक ब्रिज बना नजर आ रहा है और उस ब्रिज पे एक साइकिल में कुछ समान रखे हुए एक आदमी कुछ कर रहा है। आसमान बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है।

इस फोटो में अपको एक कपड़े की दुकान नजर आ रही है आ रही है जहाँ पर लेडिस सूट टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

जा रहे है और कुछ लोग नज़र आ रहे है यहाँ एक व्हाइट कपड़ो में एक इंसान नज़र आ रहा है।

और ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने हुई है रेड कलर का घाघरा पहना हुआ है और ब्लैक कलर की लेगी और हम ब्लैक व्हाइट कलर के जूते पहने हुए है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको बड़े-बड़े पत्थरों के बीच एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहा है ऐं-ऐं-- ।

एक लड़के ने उन पत्थर पे हाथ रखा हुआ है जिसने अपने सिर पर केप लगाया हुआ है और लड़की एक पत्थर पे बैठी हुई है जिसने अपने सर पर चश्मा लगाये रखा है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको एक यूनियन बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है और इस बिल्डिंग में आपको विंडो नजर आ रही है।